अग एगो मर्द हई तीन दुगो लड़की हई एगो लड़की साड़ी पहले हई केस खोलले हई।

लद्धी के कानि हय और नीचा रोड हय और पीला रंग और लाल रंग अथी है रोड ।

एक लड़का है आगे हाथ केएले एगो पीछे हाथ केएले हेय उ टी-शर्ट पहिनले पियर ए मे के।

लाल में आसमानी में कैथक मे --

आरो उ मकान ढ़लाई वाला के पता नहीं कोथि ढ़लाई एगो मशीन हई।

पानी हई इ पानी में एक ओर इ --

उधर पर जींस आर येमे काला जींस इ दोनों फेटल हय अ इ पियर शर्ट हय एक बाय पि --

नीचा गौर लटकाएले हई काला चप्पल हई एक लड़का बइठ के एमें घूमल हई।

ओ हाथ में कथी दन ने लेले हेय एकर घेरले हेय अथि से --

तीन गो मंदिर एगो डबल दुगो छोटा हेय काते-काते बहुत फुल के गाछी हेय।

उज्जर हय पियर हय दुगो औरत हय एक औरत हाला साड़ी पहनले हय।

एमे मर्द हेय उ मर्द हेय लाल में के चेन्हा वाला शर्ट पहिन्ले हेय।